और यही सब गोल्डन कलर में दिख रहे हैं।

यहां पे रेल के पटरी बिल्कुल अभी ख़ाली है।

कि यहां दो बाइक खड़ी हैं और रोड पे बहुत सारे--